और सामने एक अ जीना भी नज़र आ रहा है और सामने एक बिल्डिंग है जो सफ़ेद रंग की है।

यहाँ थोड़ी दूरी में हरा घास लगा हुआ है और थोड़ी कच्ची मिट्टी का नज़र आ रहा है।

आ-म्- रेलिंग लगी हुई है। ये रेम्प एक म् --

दिए गए इमेज में हमे एक मार्केट नज़र आ रही है। जिसमे कई सारे लोग है। इ-रिक्शे दिखाई दे रहे हैं।

दिए गए इमेज में हमे काम्प्लेक्स नज़र आ रहा है जिसमे --

आ नीले रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं।

जो बैठने के लिए बनाया गया है और आंगन है। पक्का आंगन दिखाई दे रहा है।

दिए गए इमेज में हमे एक पक्की सड़क नज़र आ रही है उसके ऊपर लाल रंग की कार नज़र आ रही है।

इसमें दो आदमी खड़े हैं जो --

मूर्तियां बनी हुए हैं। पीछे सफ़ेद रंग के पहाड़ बनाये गए हैं।

दिए गए इमेज में हमे एक रोड नज़र आ रही है जो इंटर लॉकिंग है और उसके ऊपर डीवायडर बना हुआ है।

जिसमें फूलो से श्रधांजलि दी गयी हुई है। साइड में चक्र बने हुए हैं और दो लोग खड़े भी हैं।

और जो ऊपर पर्दे लगे हुए हैं जो इसमें सफ़ेद रंग के हैं। उसी में लाल बीच में क्रीम --